ये किसी इवेंट का फोटो लिया गया है जहाँ पर दो दोस्त स्टेज पर बैठे कर के फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं और स्टेज के पीछे फूलों और मालाओं से बहुत अच्छी डिज़ाइन की गई है और एक गणपति जी की मूर्ती लगाई गई है।

और यहाँ पर एक अ रेड कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है।

ये स्कूल का फोटो लिया गया है और यहाँ पे कुछ कम्पीटिशन किया जा रहा है और यहाँ पर एक सर्कल बनाकर के कुछ बच्चे कम्पीटिशन का मजा लेते हुए नजर आ रहे --

ये एक बुक - सेंटर की शॉप है जो की आरती बुक - सेंटर के नाम से जानी जाती है।

और यह मुजफ्फरपुर में स्थित है और यह मुजफ्फरपुर के दीपक पार्क मार्केट में स्थित है।

ये किसी क्लिनिक का फोटो लिया गया है जहां पर ऐसा शख्स आदमी का कुछ टेस्ट किया जा रहा है और यहा पर एक डॉक्टर दिखाई दे रहा है और ये आदमी बैठ कर लेट कर के अपनी टेस्ट करवा रहा है।